यहाँ पर मुझे एक कक्ष बना हुआ दिखाई दे रहा हैं जिसमे एक फोटो लगी हुई दिखाई दे रही हैं और कई पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं कु--

यहाँ पर एक मार्केट दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी कार रखी हुई दिखाई दे रही है एक टप रखी हुई दिखाई दे रही है दे रही है।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक छाता लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं व--